ये दृश्य का अस्पताल का है जिसमें आपको सुविधा--

जिसमें आपको आरामदायक बेड मिलेगा ए_सी की फैसिलिटी और कई नई नई मशीनें भी उपलब्ध--

जोकि काफी सुंदर सी स्टाफिंग्स काफी सुंदर सी गार्निश करते हुए दिख रहा है।

और एक बसीरा इंडियन होम प्लान आप देख सकते है होम का प्लान करते हुए ये लो--

शॉपिंग करना है तो यहां आना है शॉपिंग करते हुए कुछ लोग अपनी जरूरतों को खरीदते हुए कुछ लोग यहां उपस्थित है।

हवाई अड्डा का दृश्य जिसमें एक सुंदर सा लहराता हुआ झंडा--

और आप बीच में रास्तो को भी देख सकते है की दो मंजिलों के बीच में एक रास्ता है जहां से आप अंदर आ सकते--

हर साल की आखिर में आते हैं ये त्यौहार ये--

या बच्चों का आपको कॉफी खरीदना है पेंसिल रबर कंपस एवं अनेक प्रकार की स्टेशनरी सामान उचित मूल्य पर यहां उपल--

बच्चों को बुक लेना है कॉपी लेना है।

कितना सुंदर कितना मनमोहक आप ये दृश्य देख सकते है ये ब्रिज है ब्रिज के नीचे बहोत ही सुंदर मुझे --

आसान इसमें सारी आयु के लोग अपना इलाज अच्छी सुविधाओं के साथ करवा सकते हैं।

अगर आप इस बिल्डिंग को देख रहें तो एक लंबी सी आपको बालकनी दिख रही होगी ये बेसिकली --

हरी भरी हरी भरी वृक्षों के साथ आप आनंद लेते रहे और ताजा होते रहे।